इस फोटो में मुझे एक रूम देखने को मिल रहा है इसके अंदर बहोत सारे पी_सी वगैरा वगैरा रखा गया है।

उसका पीछे में मुझे बहोत बड़ा बड़ा पहाड़ देखने को मिल रहा है।

मुझे इस तस्वीर में एक जंगल देखने को मिल रहा है जंगल का विशेष--

क्योंकि देखने में पूरा मंदिर का तरह देखने को मिल रहा है और सामने मुझे बहुत इलेक्ट्रिक वायर्स देखने को मिल रहा है।

और इनमें से एक ठो छोटा सा एक--

इस तस्वीर में मुझे एक बड़ा सा बिल्डिंग देखने को मिल रहा है जो कि पूरा का पूरा येलो कलर से पेंट किया हुआ है और यह देखने में--

फोटो खोटो फोटो वगैरह खिंचवा रहा है।

इस तस्वीर में मुझे एक बड़ा बड़ा सा एक फील्ड देखने को मिल रहा है जिसमें इंसान लोग खेल रहा है।

दो लोग डाल के वापिस जा रहा है कोई कोई ले के आ रहा है जो कि वो लोग माथा में कुछ गमछा ओमझा बांध के है।

सामने मुझे एक मछली वाला बॉक्स में एक पानी बोतल रखा हुआ देखने को मिल रहा है।

खेलने के लिए भी बहोत सारा कुछ बना के रखा हुआ देखने को मिल रहा है।

दो तीन घर देखने को मिल रहा है जिसके सामने जे_सी_बी वगैरा वगैरा और खड़ा हुआ है।

इस तस्वीर में मुझे एक गाड़ी देखने को मिल रहा है वो की फोकलेन है। और वो मिट्टी खोद रहा है।

सामने एक मुझे बै बैनर लगाया हुआ देखने को मिल रहा है।

मुझे इस तस्वीर में एक बड़ा सा एक ब्रिज देने को मिल रहा है जोकि ये --